गोल्डन वाइट कलर का है। सैलून है शेविंग क्रीम रखी हुई है लोशन रखा हुआ है।

मैडल है लाइट है ब्लू कलर का पेंट है येल्लो कलर का पेंट है वाइट कलर --